एक बहुत ही सुंदर गार्डनिंग एरिया जैसा दिखाई दे रहा हैं जहाँ के बहुत बड़े-बड़े झाड़ फूल पत्ते और र अ --

एक शादी का मंडप जैसा दिखाया गया है जहां फूलों से सजाया हुआ है।

ये जहां पर कुछ पाइप्स वगैरा लगे हुए है एक झाड है काफी सारे बड़े टावर जैसे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रूम है जहां पर साइड में दो कर्टन्स लगे हुए हैं बड़े बड़े।